जिसमें पानी रखा हुआ है और ये मिरर भी दिखाई दे रहा है।

ये ऑटो है और देखिये दोनों को एक साथ में खड़े हो कर एक आदमी कुर्सी पे बैठे हुये बतला रहा और एक आदमी --